कुछ शांति का माहौल दिख रहा है।

यहाँ पे कुछ बल्टी कुछ छोटे छोटे टीन और एक आरी काटने वाली मशीन और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे कुछ बल्ब लगाए हुए है।

इस तस्वीर में एक बड़ा व्हाइट कलर का घर दिखाई दे रहा है।

घर के पास ही में एक टेडिस भी बनाया हुआ है ब्लू कलर के सीढ़ी से --

बगल में एक व्हाइट कलर का घर और भी है।

यहां पे नीचे में एक दुकान दिखाई दे रहा है जो किराने का दुकान है।

पीछे भी कुछ दुकान दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक घड़ी कुछ पंखे और कुछ स्विच बोर्ड दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में नीचे में ढेर सारे व्हाइट व्हाइट कलर के प्लास्टिक दिखाई दे रहे हैं।

कुछ लोहे की चीजे दिखाई दे रही है।

पीछे में कोकोनट का पेड़ दिखाई दे रहा है।

यहां पे जाने का रास्ता गेट सब दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे ऊपर में एक शटर दिखाई दे रहा है।

ऊपर में कुछ और भी सामान रखे गए हैं मैट वो नीचे बिछाने के लिए।

थोड़े थोड़े ब्लैक डिजाइन भी बनाए हुए हैं।

यह येलो और रेड कलर की है थोड़ी थोड़ी व्हाइट की है।

इस तस्वीर में एक छोटा सा होटल का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां पे कुछ थोड़े थोड़े पेंटे भी की गई है।

सामने में सरस्वती मां का फोटो दिखाई दे रहा है।

सबने अलग अलग कलर की मैट ली हुई है और बीच में टीचर भी दिखाई दे रहे हैं।

कुछ लोग वॉकिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

कमला पूरी एजेंसी दिखाई दे रहा है टी_वी_एस का।

इस तस्वीर में आलू दिखाई दे रहे हैं और यहां पे एक के ऊपर एक आलू रखे गए हैं।

कुछ आ आलू में काली काली परत भी लगी हुई हैं।

यह एक डोलची में रखे गए हैं और यह डोलची का कलर ब्राउन है।

ज्योमेट्री बॉक्स में कुछ बॉल्स रखे हुए हैं।